यह एक गैराज की पिक है साइड में ब्लैक कलर की कार खड़ी है।

इसके पास पाइप में ब्लू कलर का--

यह एक मकैनिक की शॉप है इसमें काफी सारे--

पैलेस के अंदर फ्रूट चाट की स्टॉल को बहुत सुंदर--

खंबे की तारो की तरफ ऊपर जा रही है।

नहर के बाहर एक आदमी उस पिलर पर बैठा है।

यह होली रोसरी कैथोलिक चर्च है जो--

स्कूल का नेम चर्ट आन्या टेक्नो स्कूल है।

मिरर वाले शीशे भी गेट पर लगाए हुए है वॉल पर--